इस फोटो में बहोत सारे टमाटर रखे हुए हैं।

फोटो में एक स्कूल है इस स्कूल का कलर पिंक कलर का है।

कुछ स्टूडेंट अपना गिफ्ट ले रहे हैं और उसके साइड साइड में टीचर्स खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ी बिल्डिंग है।

वॉल का व्हाइट कलर का है।

इस रूम के वॉल पे बलूंस लगे हुए हैं।